और इधर कई प्रकार-प्रकार की गाड़ी पार्क खड़ी गाड़ी खड़ी हुई हैं और गाड़ी के बगल में कई सारे बड़े-बड़े हरे भरे पेड़ पौधे भी लगे हुए हैं।

और ग्राउंड के अगल-बगल कई सारे आदमी भी खड़े हुए हैं और आपस में कुछ बातचित वगैरा भी कर रहे हैं ।

कई सारे डाइनिंग टेबल रखे हुऐ है ।

और जे बंदर कुछ-कुछ खा रहे हैं और इस ट्रेन की पटरी से एक ट्रेन भी निकल रही है।